एक जिम का फोटो है जहाँ पर नई जिम खुली हुई है यहाँ तीन कलर के बलून लगे हुए हैं रेड ब्लैक और येलो यहाँ बहुत सारी लाइटिंग है।

होटल का नाम रेड कलर के अक्षरों से लिखा हुआ है होटल कि दोनों तरफ ग्रे कलर कि बाउन्ड्री बनी हुई है बीच में ग्रिल लगी हुई हैं ।

नदी के किनारे एक सफेद पन्नी पढ़ी हुई है वह एक दूर ब्रीज नजर आ रहा हैं ।